इस डेम में बहुत पानी बह रहा है डेम के--

दूसरे तरफ में बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया हुआ है।

छत के ऊपर में ढेर सारा रड बाधा हुआ है।

इस ग्राउंड के चारों तरफ में बाउंड्री किया हुआ है जो की ब्लू और वाइट कलर का है और डिजाइन बनाया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा है नदी का दृश्य है।

सीढ़ी के नीचे में ही छोटा छोटा पत्थल भी है।

यहां पर एक बहुत बड़ा सीढ़ी है और सीढ़ी के किनारे किनारे में लोहे का रेलिंग दिया हुआ है।

पिंक केक को कई भागों में बांटा हुआ है।

येलो केक के ऊपर में दो फूल बनाए गए हैं जो कि पर्पल और पिंक कलर के हैं।

यह एक बहुत सारा क्राफ्ट का दृश्य है।

सारा क्राफ्ट पेज से बनाया गया है जो की रंग बिरंगा पेज --

पेज के नीचे में ही एक बहुत बड़ा ही पेज बिछाया गया है जोकि ब्लू कलर का है।

पहाड़ के नीचे भी एक बहुत बड़ा पेड़ है।

इस ए_टीए_म के अंदर में इसकी दीवार का कलर भी वाइट है और नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा नदी का दृश्य है इस नदी के चारों तरफ में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान के ऊपर में बोर्ड पर मिलाप मेडिकल सेंटर लिखा हुआ है।

नीचे में बहुत सारा चेयर रखा हुआ है और कुछ लोग भी हैं।

यह एक बहुत बड़ा खाली स्थान का दृश्य है।

दुकान के ऊपर में करकट लगा हुआ है और बीच बीच में ब्राउन कलर का पोल बांधा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड का दृश्य है इस ग्राउंड में ढेर सारा बालू का ढेर लगा हुआ है और कहीं कहीं मिट्टी का भी ढेर लगा हुआ है।

यह एक घर के बाहर में दीवार का दृश्य है इस घर की दीवार पर मट्टी लगा हुआ है।

उसमें कुंडी लगाया हुआ है।

यह एक खाई का दृश्य है इस खाई के ऊपर में बहुत बड़ा सा पहाड़ है।

और ऊपर में बहुत पेड़ पौधा लगाया हुआ है।

यहां पर ढेर सारा छड़ और सीमेंट से बनाया हुआ है।

इसमें बलून भी लगा हुआ है जो कि रंग बिरंगा कलर का है।

और स्टेज पर कारपेट बिछाया हुआ है जो की ऑरेंज और वाइट कलर का है और उसमें फ्लावर बना हुआ है।

यहां पर एक जेसीबी भी है जोकि ऑरेंज कलर का है।